ये एक बेकरी शॉप टाइप कुछ दिखाई दे रहा हे।

फ्री होम डिलीवरी भी दीवाल पे ऐसा कुछ लिखा हुवा हैं।

नीचे की ओर से दिखाई दे रहा है कि यहां पे जानवर रहते हैं।

यहां पे लोग आकर के अपने बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स को फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं।

यहां एक इंसान बैठ के कपड़े पे फोन चला रहा है।

ठेले के ऊपर साइड कपड़ा एक टंगा हुआ है।

यहां पे लोग प्रे करने आते हैं।

पीछे भी ढेर सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

एक रोज का भी फूल है।

लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं।

यहां पे कैफे वगैरा हैं जैसे कि पिज्जा हट पाव भाजी ट्विस्टेड ई_टी_सी वगैरा --

यहां पे लोग बैठके खा पी सकते हैं।

और इस बैनर से लोग अपने चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरे यहां ये सामान मिलता है वो सामान मिलता है।

यहां पे लोग आकर के बुक कॉफी वगैरा खरीद सकते हैं।

ये एक मेट्रो स्टेशन है।

इधर से लोग एंट्री कर सकते हैं।

कुछ औरतें पीछे खड़ी हुई हैं।

चर्च का सिंबल है और एक घर जैसी दीवाल है।

ये एक ड्राई क्लीनर का शॉप है।

कुछ बच्चों का खेलने का जगह है।

लड़के के इस फोटो से यही पता चलता है।

जिसमें तीन सीट्स दी हुई है जिसमें लोग बैठ के पढ़ सकते हैं।

और लोग यहां से सामान ले रहे--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

यहां पे लोग आकर के बातचीत कर सकते हैं बैठ सकते दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं।

इस फोटो को देख के ये पता चल रहा है कि ये एक गिफ्ट शॉप है।